और सामने एक बांस का डंडा दिखाई दे रहा है साथ ही--

बड़े गार्डन को देख पा रहे हैं।

यहां पर हम सामने बहुत से लोगों को--

पीछे दो ट्रेडमिल्स लगे हुए हैं जिन पर एक इंसान एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहा है।

एक बड़े से सफेद रंग के मंदिर को देख पा रहे हैं।

एक बड़े से लोहे के गेट को देख पा रहे हैं।

मशीन का रंग पीला दिखाई दे रहा है।

जिस पर भुरे रंग का एक कुलर टंगा हुआ दिखा--

पनीर के जैसा लग रहा है।

जिस पर लकड़ी के रैक पर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर छज्जे बने हैं।

जिस पर बहोत से पौधे लगे हुए है।